आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक स्कूटी खड़ी हुई है एक ग्राउंड में और यहां पे बहुत हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं सामने ही वाइट कलर का कुछ बना हुआ है।

आप लोग देख रहे हैं यहां पर गुलदस्ते रखे हुए हैं बहुत ही प्यारे जिनमें फूल वगैरह लगे हुए हैं पीछे गाय भी खड़ी हुई हैं यहां अंकल भी हैं भैया भी हैं।

आप लोग देख रहे हैंयहाँ पर बहुत ही सारी क्रेट रखी है जिसमें पाइनएप्पल सेब आम वगैरह सब कुछ फल फ्रूट रखे हुए हैं बहुत ही सारे केले सब--

आप लोग देख रहे हैं यहां पर ढलता हुआ सूरज बहोत ही प्यार लग रहा है यहां पर एक नाव है जिसपर दो लोग खड़े हुए हैं हरे भरे पेड़ भी हैं बहुत सारा पानी भी है बहुत सुंदर लग रहा है।

आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर नीचे मिट्टी में बहुत ही प्यारे गेंदे के पीले और ऑरेंज फूल लगे हुए हैं औरयहाँ पर पेड़ भी लगे हुए हैं छोटे-छोटे--

आप लोग देख रहे हैंयहाँ पर बहुत ही सारी कुछ मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां रखी हुई हैं नीचे गुलदस्ते रखे रखे हुए हैं प्यारे-प्यारे फूल लगे हुए हैं।

आप लोग देख रहे हैंयहाँ पर ये एक दुकान है और यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है खाने पीने का और सब कुछ क्रीम वगैरह--

आप लोग देख रहे हैं ये कुछ सी_सी_टी_वी कैमरा का कुछ बोर्ड लगे हुए हैंयहाँ पर एक ये कुछ टाइप ऑफिस टाइप है कुर्सी रखी हुई है एक अंकल खड़े हुए हैं।

आप लोग देख रहे हैं ये एक रोड है जिस पे दो भैंसे चलके आ रही हैं कुछ मल्टियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं और अ --